और उपर बहुत सारी लाइटे लगी हैं नीचे व्हाइट टाइल्स लगी हैं छह-चार जूते भी लगे हैं ।

सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है इसमें बहुत सारे शीशे लगे है नीले कलर की बिल्डिंग हैं और ब्राउन कलर की है दो-तीन बोर्ड लगे हैं ।

सामने बहुत सारी कुर्सियां रखी है एक टेबल है ऊपर झूमर भी लटका हुआ है गाड़ी बनी हुई है दीवाल में--

मिकी माउस का भी झुला है पीछे जनरेटर वगेरा है बहुत सारे रखे है अंदर एक गाड़ी भी है बाइक भी है तार-वार --

सामने दो ऑटो खड़े हैं एक नीला है एक लाल है एक गाड़ी में दोनों ऑटो खड़े हैं नीचे टायर रखा हुआ है।

जाली भी लगी है पाइप लगे हैं और पीछे बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है | एक बड़ा-सा पेड़ है उसमें एक बाल्कनी भी बनी हुई है।

भी कर रहे हैं बोहोत सारे लोग सामान भी लिए हैं और खिडकियां भी लगी है बस मे काली कलर की और बोहोत सारी पीछे बिल्डिंगे भी बनी है।

इन लकड़ी के तरे बना है और पीछे एक हरा कलर का भी मैट है बहुत सारे पाइप हैं लाइटें भी जल रही हैं।

है और सामने एक वाइट लाइट जल रही है। एक बड़ा सा सामने मकान है। उसमे बोहोत सारी खिडकियां लगी हैं रेलिंग है।

और अंदर बहुत सारी किताबें है बुक्स है और नीचे थोड़ी बहुत रस्सी भी पड़ी --

सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं ब्लू कलर का पोस्टर लगा है | एक नीले कलर का है पोस्टर लाल कलर का भी है और उपर बहुत सारे --

अ सामान भी लिए हैं गत्ते भी रखे हैं एक अंकल धो --

आलू ब्राउन है देशी आलू है ।